यहां हमे एक स्कूल नजर आ रहा है।

जिसमें एक आदमी लेटे दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ हमें दूर एक किला दिखाई दे रहा है।

और पीछे भी एक कोई खड़ा दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे कुछ बैनर भी लगे दिखाई दे रहें हैं।

और हमें यहाँ पे ओपन प्लेस भी नजर आ रहा है।

यहाँ हमें एक समुद्र दिखाई दे रहा है।

और बाहर पे एक पेड़ भी लगा दिखाई दे रहा है।

मौजूद है यहाँ पे हमें एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक भगवान का डांस करते दिखाई दे रहें हैं।

और पार्क में कुछ बेंचेस भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे बायलॉजी की क्लासेस भी ली जाती है।

यहाँ पे हमें एक राजस्थान के कपड़े पहने हुए छोटे-छोटे मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

और पीछे कुछ सेल्फ में हमें कॉस्मेटिक के सामान भी दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ हमें एक मंदिर द् दिखाई दे रहा है। य --

जहाँ पे हमें बहुत से सामान लटके नजर आ रहें हैं।